सामने मछली का पोस्टर लगा है एक आदमी बैठा है और.

सामने गाड़ी भी खड़ी है और बहुत सुंदर डेकोरेशन भी है ऊपर बल्लब जल रहा है.

छोटा छोटा टुकड़ो में पहाड़ एरिया पत्थर की तरह दिख रहा--

जंगल में बेड पे सोया है और--

एक मकान है मकान के सामने बड़ा सा गेट बना हुआ है और व्हाइट रंग का चादर ओढ़ा हुआ कुछ है पेड़ लकड़ी जैसा दिख रहा है।

पेपर जैसा कुछ लटका हुआ है और--

डेकोरेशन में है तो अच्छा ही लग रहा है।

चार पांच लोग दिख रहे हैं एक लोग बैठे हैं और माला भी--

गेंदे का माला येलो और ऑरेंज में और--

में अंगरबत्ती जल रही है और.

चारों तरफ से अंधेरा छा रहा है धीरे-धीरे एक आदमी खड़ा है.

सामने पोस्टर लगा हुआ है तीन सौ साठ लिखा हुआ है.

और पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं पुल में पर रेलिंग भी लगा हुआ है और.

सामने पोस्टर भी लगा है और सामने बल्ब भी है दो दरवाजा है एक दरवाजा साफ दिख रहा है और वाइट कलर की मकान है बल्ब जल रहा है.

सामने डेकोरेशन में फोटो सारा दिखा है सारा सामान रेखा है.

ऑरेंज कलर का अंदर फल और फूल भी.

रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है और बत्ती भी अंदर जल रहा है.

सामने मोबाइल की दुकान है। लाल पीला हरा सब देख रहा है। सामने टी_वी भी देख रहा है और शीशे का बेंच भी लगा हुआ है।

सामने शॉप है बहोत लोग खड़े हैं और रंग बिरंगे--

और सुंदर सुंदर फल और पेड़े भी.

तीन मुकुट लग रहा है एक रॉड दिख रहा है और सारा बहुत कुछ दिख रहा है.

बहुत सुंदर दिख रहा है ऑरेंज कलर का दीवार है।

ऑरेंज कलर का और चेयर भी रख लगा हुआ हैं।

डाइनिंग टेबल है फ्रीजर है ऊपर किचन का सारा सामान रखा हुआ है चार बॉक्स टाइप में डब्बा दिख रहा है.